मजदूर कुल आपन रैक बनाकर चड़के प्लास्टर करत ताने दुई को मजदूर्वा नीचे काम करत ताने सं पिछवा हरा भरा पेड़ पौधा लौकत बा --